इस फोटो मे मुझे एक से तीन ऑटो दिखाई दे रहे है यहां पर बहुत सारे लोग खडे हुए है साथ मे आपस बहुत सारे --

चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और साथ में यहां पर बहोत से--

और यहां पर दुकान का नाम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया हैं साथ में यहां कांच की ग्लासें लगाई गई हैं।

यहां पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं अंदर की तरफ में ए_सी लगा हुआ है व्हाइट कलर की दीवालें हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी कांच की ग्लास दिखाई दे रहे हैं साथ में आपका बहोत से समान--

और यहां पास एक मेडिकल भी खुला हुआ है।

और यहां पास बहोत सारे दिये जलाए गए हैं।

बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं कुछ बच्चे यहां--

इस फोटो में मुझे एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है।

साथ में यहां पास एक रेल्वे स्टेशन है रेल्वे स्टेशन के अंदर बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई है।

लोग बैठे हुए हैं यहां कपड़ों की एक दुकान है कपड़ों की दुकान के अंदर बहुत सारे--

यहां पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और चारों ओर बहोत से लोग बैठे हुए हैं।

और कुछ लोग फील्डिंग कर रहे है कुछ लोग बैट के ऊपर बैठे हुए है यहां पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है और यहां छोटी-छोटी घास भी उगी हुई है।

यहां पे से बाहर शटर लगाया गया है और यहां पर कुछ लोग लोहे का सामान निकाल रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है। जंगल के इस साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। चारों ओर बहोत से लोग खड़े हुए हैं।

इस फोटो में मुझे एक इंसान पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।